और कुछ कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

एक हॉल दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति नीचे बैठे हुए हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने कुछ लाइन के गमले रखे हुए नजर आ रहे है।

कुछ बारह सिक्का नजर आ रहे हैं।